ये चेन एक ग्राम का दिखाई दे रहा है जहां में काफी सारी औरतें पूजा करती हुई नजर आ रही है।

लाल कलर का जिस पर धर्म पेलेस लिखा है वहां तीन झंडे सफेद नीला पीला लगा है।

ग्राउंड पर काफी जगह घास दिखाई दे रही है।

इसकी दुकान पर बहुत सारी स्थिरियों और दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक व्यक्ति अपने हाथ में मोबाइल लिए--

नीले कलर की टी शर्ट पहना हुआ ये व्यक्ति है।

यह चित्र एक बिल्डिंग के बाहर का दिखाई दे रहा है।

यहां एक बैनर पे अमूल लिखा हुआ है एक पिज़्ज़ा का बैनर लगा है।

यहां पे दो ओरते साड़ी पहने हुए अंदर की ओर देखते हुए नजर आ रही है।

चित्र में एक बड़ा सारा लोडिंग दिखाई दे रहा है जिसे दो व्यक्ति खोलते हुए नज़र आ रहे है।

यह क्षेत्र एवं ग्राउंड का दिख रहा है जहा की जमीन--

कथेई कलर के सूगी हुई खांच की दिखाई दे रही है छोटे-छोटे से लैम दिखाई दे रहे हैं।

यहां काफी सारी ट्रेंड मशीनें दिख रही है जो कि सिल्वर ब्लैक और--

यह चित्र एक जंगल का दिखाई दे रहा है जिसमें एक हाथ में एक व्यक्ति सफेद कलर का फूल--

ये बड़े सारे होल का दिखाई दे रहा है जिस पर बड़ी सारी टेबल पर--

लाल चेयर पर बैठा हुआ एक व्यक्ति पेपर और --

तुम बाहेरी दिख रही है यहां पे एक व्यक्ति गेट के अन्दर जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

गेट के अन्दर के दरवाजे कतई कलर की--

यह चित्र एक सफेद बिल्डिंग का है जिसके ऊपर इंडियन कार ट्रांसपोर्ट कंपनी --

सामने एक मास्टर सफेद शर्ट ब्लू जींस में सफेद बोर्ड पर उन्हें पढ़ता हुआ देख दिख रहा है।

ये चित्र एक अच्छे ग्राउंड का दिख रहा है।

साइड में लगी हुई पीस सफेद बिल्डिंगें दिखाई दे रही है।

जिन्होंने सफेद कत्थे कुर्ते और सफेद नुंगि पहनी हुई और बैग टांगे हुए है।

आसपास पेड़ बड़ा सारा पहाड़ दिख रहा है।

ये चित्र एक शादी का दिखाई दे रहा है और दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं।

पास में हरा गेट लगा है काफी सारी--

इस चित्र में जमीन पर हरे कलर की घास दिख रही है बड़ा सारा हरा पाइप है।

इस व्यक्ति ने चश्मा लगाया है सफेद शर्ट गिरे पेंट पहने हुए--

मिट्टी एकत्रित है आसपास कई सारे लोग खड़े है इस मिट्टी पर एक व्यक्ति --

यहां अंदर जाता हुआ एक रास्ता है दुकान पीले कलर की है।

यहां बीच में ज़ेबरा क्रॉसिंग दिख रही है आसपास--

ऊपर की ओर सीढ़ियों का रास्ता गया हु--

छत के ऊपर पंखा अथवा ए_सी दिखाई दे रहा है।